ये लाल रंग का टीना का घर है।

और एक स्टूडेंट बायसायकल चला रहा है।

पिंक कलर का एक घर है।

ये एक छोटा सा बार है।

पर बड़ा सा घर दिखाई दे रहा है।

रास्ता दिखाई दे रहा है।

वेट नापने वाला मशीन भी दिखाई दे रहा है।

ऊपर मे बैग है और वॉल पे एसी है ट्यूबवॉल है सीसीटीवी कैमरा है और कोना में दो फोटो है।

और वो फेस वॉश का नाम गोल्ड प्लस है।

पीछे में घर है जंगल है और ये पार्क है।